यह एक मिथिला बुक सेंटर है। जो हमारे जीवन से संबंधित सारी बातें इस बुक में है। और यहां पर एक करीब आदमी भी है। जो कि ऐसा लग रहा है। यहां पर किलो बुक को खरीद रहे हैं। और यहां का अथी बोहोत ही सुंदर है।

दूसरा-दूसरा रंग लग रहा है।

यह एक ऐसा लग रहा है की यहाँ पे मियाँ लोग अपना अधिकार मांगने आए हैं।

ऐसा दुकान लग रहा है जैसा की यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत ही सुंदर शर्ट लिए।